और नीचे वाले पत्थर पर उन्हें काटकर उसी पर सीढ़ियां बनाई हुई है पत्थर की ही--

पास मे ही एक अध्यापिका भी खड़ी हुई है।

छे ए_सी नीचे है और चार ए_सी को उनके ऊपर रैंक में रखा गया है।

नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है।

ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं तो--

नीले रंग का वो झूला है।